लिबरे ऑफिस draw में setting preferences पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में आप सीखेंगे कि निम्न preferences को कैसे set करते हैं:
यहाँ हम अपने operating system के रूप में ubuntu लिनक्स version 1004 और लिबरे ऑफिस suite version 334 उपयोग कर रहे हैं
file 3d objectschart जो हमने पहले सेव की थी उसे खोलें और पेज 1 पर जाएँ
मानिए बाद के सन्दर्भ के लिए हम इस file पर विवरण जोड़ना चाहते हैं
ऐसा करने के लिए main menu से file चुनें और properties पर click करें
आप properties dialog box देखेंगे
general टैब पर click करें उस file से सम्बंधित सारी जानकारी यहाँ सूचीबद्ध है
कृपया ध्यान दें: हम यहाँ केवल file का विवरण देख सकते हैं आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते
आगे description टैब पर click करें
यहाँ हम अपनी ज़रुरत के अनुसार title subject keywords और comments प्रविष्ट कर सकते हैं
यह जानकारी बाद में सन्दर्भ की तरह प्रयोग की जा सकती है
title क्षेत्र में 3d objects chart type करें
subject क्षेत्र में हम 3d objects comparisons type करेंगे
keywords में हम 3d and 3d effects type करेंगे
अंततः comments क्षेत्र में type करें learning about file properties
draw file से सम्बंधित जानकारी type करना एक अच्छा अभ्यास है
description टैब में उपस्थित विशेषताओं के अतिरिक्त आप अपनी खुद की विशेषतायें set कर सकते हैं
उदाहरण के लिए आप वो date पता कर सकते हैं जिसमें वो document बनाया गया था
document का editor
उपभोगता जिसके लिए वो document बनाया गया था आदि
draw विशेषतायें रखता है जो इस जानकारी को customize करने में आपकी मदद करता है
properties dialog box में custom properties पर click करें
यहाँ आप तीन क्षेत्र देखेंगे: name type और value
नीचे दायीं तरफ add button पर click करें
अब प्रत्येक क्षेत्र में आप dropdown boxes देखेंगे
अब name dropdown पर click करें और date completed विकल्प चुनें
type dropdown में हम date time चुनेंगे
value क्षेत्र अब date और time दिखायेगा
अब date को नहीं बदलते हैं
time क्षेत्र में 10:30:33 प्रविष्ट करें
अब आपको now date पता है जिस पर document बनाया गया था
add एक अन्य क्षेत्र जोड़ते हैं add पर click करें
आप drop down boxes की दूसरी सूची देखेंगे
name dropdown में checked by चुनें
type क्षेत्र के लिए text चुनें
value में text abc type करें
ok पर click करें ऐसे आप draw file में अपनी खुद की विशेषतायें जोड़ते हैं
अब सीखते हैं कि एक विशेषता जो हमने बनाई उसे कैसे मिटाते हैं
main menu पर जाएँ file पर click करें और properties चुनें
properties dialog box में custom properties पर click करें
पहली विशेषता checked by मिटायें
दायीं तरफ remove property button पर click करें विशेषता अब मिट गयी है
ok पर click करें
आप draw file के विविध versions भी सेव कर सकते हैं इस विशेषता को versions कहते हैं
उदाहरण के लिए आप पहले दिन objects को जोड़ सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं
अगले दिन आप drawing में रूपांतरण कर सकते हैं
आप वास्तविक drawing और रूपांतरित drawing दोनों की एक प्रति रखना चाह सकते हैं
अब versions विकल्प प्रयोग करके file को सेव करते हैं
main menu से file पर जाएँ और versions पर click करें
आप versions dialog box देखेंगे
save new version button पर click करें
आप insert version comment dialog box देखेंगे
अब टिप्पणी version one type करें
ok पर click करें और फिर close पर click करें
अब शीर्षक में text बदलते हैंgeometry in two d shapes and three d shapes
अब text का रंग नीला करते हैं
अब versions विकल्प प्रयोग करके file को सेव करते हैं
main menu से file पर जाएँ और versions पर click करें
save new version button पर click करें
insert version comment dialog बॉक्स दिखता है
टिप्पणी version two type करें
ok पर click करें
यहां दो versions सूचीबद्ध हैंversion one और version two
हम जानते हैं कि version one काले रंग के शीर्षक font वाली file है
और version two नीले रंग के शीर्षक font वाली file है
अब version one चुनें और open पर click करें
हम काले रंग के शीर्षक font वाले version को देख सकते है
हर बार जब आप draw file बंद करते हैं तो आप versions की स्वचालित saving को सक्षम कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए file पर click करें और फिर versions पर click करें
अब एक checkbox विकल्प आता है जो बताता है always save a version on closing
इस बॉक्स पर टिक करें
यह निश्चित करेगा कि प्रत्येक बार जब आप ड्रा फाइल बंद करते हैं तो एक नया वर्शन सेव हो जाता है close पर क्लिक करें
आप अपनी draw file के लिए देखने की वरीयताओं को भी set कर सकते हैं
आप अपनी drawing को color gray scale या black और white में देख सकते हैं
default रूप से हम draw file को colour में देखते हैं
अब view को gray scale में बदलते हैं
view पर click करें color/grayscale पर click करें और gray scale चुनें
आप देखेंगे कि objects अब grey में दिखते हैं
अब view को black और white में बदलते हैं
main menu से view चुनें color/grayscale पर click करें और black and white चुनें
आप देखेंगे कि objects अब black और white में दिखते हैं
आप view को दोबारा colour कर सकते हैं
ऐसा करने के लिए view पर click करें color/grayscale पर click करें और color चुनें
drawing दोबारा colour में दिखती है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
इस tutorial में हमने draw में निम्न preferences को set करना सीखा: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
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी के लिए कृपया contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
इस mission पर अधिक जानकारी htpp:// spokentutorialorg/nmeictintro पर उपलब्ध है
आय आय टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ इस tutorial को देखने और हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद